यह कोई मंदिर का दृश्य है।

सामने एक आदमी खड़ा है जिसका टी शर्ट का कलर पिंक है।

और सारी पंछियों की आंख बहुत प्यारी और छोटी छोटी सी दिखाई दे रही है।

और ऊपर बहुत सारे लाइट लगे हुए हैं जिसका कलर व्हाइट है।

यहां की फर्स् में टाइल्स लगी हुई है टाइल्स का कलर व्हाइट हैं।

यहां एक नेटवर्क का टावर भी दिखाई दे रहा है।

ऊपर कुछ लाइट्स लगी हुई है जिसका रंग सफेद है।

सारे टेबल के ऊपर लाल रंग का मैट बिछाया गया है।

यहां एक ब्लू कलर का बड़ा सा ड्रम जैसा कुछ दिखाई दे रहा है।

और ऊपर एक पोस्ट दिखाई दे रहा है जो की पीले और ब्लू कलर में है यहां बहुत सारी साइकिलें है दिखाई दे रही हैं जिसका कलर रेड और ब्लैक में है।

और एक आदमी के शर्ट का कलर ब्लू और पैंट का कलर हल्का डार्क येलो में है।

और कुछ सोफा रखे हुए हैं जिसका कलर ब्लैक है।

यह एक जिम के अंदर का दृश्य है।

यहाँ सामने एक मकान दिखाई दे रहा है।

यहां एक आदमी बैठा हुआ है जिसका टी शर्ट का कलर व्हाइट है।

सामने एक टावर दिखाई दे रहा है और यहां कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं जिसका रंग हरा है।

कुछ मकान सफेद कर के हैं कुछ मकान पिंक कलर के है कुछ मकान ब्लू कलर के हैं।

यहां तीन कार दिखाई दे रही है एक कार व्हाइट कलर की है एक कार ग्रे कलर की है और एक कार ब्लैक कलर की है।

यहां एक स्टेज बनाई गई है जिसमें से एक सीढ़ी लगाया हुआ है चढ़ने का जिसका कलर बैंगनी कलर का है।

और बहुत सारी छोटी छोटी झाड़ियां और घास दिखाई दे रहे हैं जिसकी रंग हरा है।